बागीचा है और इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यह काफ़ी हरा भरा लग रहा है | लोग यहाँ पर आते हैं घूमने और यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगता हैं यहाँ पर प्राकर्तिक हवा मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं ।

यह एक बगीचा है और यह बगीचा बहुत ही सुन्दर है। इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे --

यह एक भेंसो का तबेला है और यहाँ पे भेंसो को रखा जाता है और लोग भेंस को पालते है और उसे दूध निकालते हैं और उसे बेचते है और दूध बेचने से वह अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और अपने--